एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है इसके पास में नदी है नदी में मगरमच्छ जा रहा है कुछ अगल-बगल घास फूस है बहुत ही शानदार है मगरमच्छ पानी में जा रहा है।